पोपट कलर का पेंट है उसपे उसके बाजू में ऑरेंज पेंट है उसके बाजू में भी एक कॉलेज है।

दो तीन गाड़ियां हैं एक रेड पपन की लेडी है।

वैशाली वैशाली नाम है उसपे नोट दहीदी --

की पनीर रसगुल्ला गुलाब जामुन के --

जैसे कि मैं सामने देख पा रही एक बहुत बड़ा ओल्ड किला है उसके सामने बहुत बड़ी ग्रीन कलर की झाड़ है।